यहाँ पर आप कह सकते है की आपको एक छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है।

दिख रहा है जिसके आसपास कई और नहीं हे जिसके आसपास में एक बडा सा कलर का दिख रहा है जो की एक चर्च है जिसके ऊपर दो गुम्बत भी है जिसमे गेट लगे हुए है।